और उसकी दुकान पे मल्टीपल चीजें हैं जैसे कि चॉकलेट्स गुटका चिप्स के पैकेट्स एक्सट्रा शैंपूज हैं चॉकलेट्स हैं।

ये एक बहोत ग्रीनरी जगह है जहां पे अच्छा ऑक्सीजन मिल सकता है ऊपर व्हाइट बादल हैं।

ये एक कार का शोरूम है जहां पे बहुत सारी कार्स होती है जो ओनर होता है वो ये सारी कार्स को खरीदता है।

ये एक गुफा है जिसमें बहोत सारे लोग घूमने जाते हैं साउथ इंडियन साइड में कोई गुफा हैं।

और थोड़ा सा हम पीछे जूम करेंगे ना तो हमें ना एक दो वॉटरफॉल दिखाई दे रहे हैं पतले की मोटे इतना तो अंदाजा नहीं है पर आई थिंक --

ये गवर्नमेंट ऑफिस है ये एक आई थिंक आर_बी_आई का ऑफिशियल ऑफिस है।

विदाउट कोकोनोट ऑयल इसकी शाइन नही है बट ये हेल्थ के लिए बहोत अच्छा होता है।

इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं पर मेरे हिसाब से खाने की तलाश में ही हो सकते क्योंकि दो डक्स है।

इनको मकसद नहीं भूलना चाहिए इनका।